शाम का समय ढ़लता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से ऑरेंज ऑरेंज दिखाई दे रहा है।

यह एक ऑफिस है जिसमे ऑफिस के गेट के साइड में फॉर जी लिखा हुआ है और सामने की ओर एक --

यह एक गैरेज है जहां पर गाड़ियां ठीक हो रही है एक कार रखी हुई है जो व्हाइट कलर की है।

और उसके ऊपर एक नंबर प्लेट लगा हुआ है जिसपर बी.पी.ओ. ऐट ऑबलीक ए.अफ. दिखाई दे रहा है।

और ऑरेंज और सफेद कलर के हैं सामने की ओर स्टी --

और एक कुआं बना हुआ है जो की सीमेंट का और ईंट का बना हुआ है घर के अंदर वाइट कलर है और --

आस-पास में बहोत सारे लोग है जो कुछ बैठे हुए हैं कुछ वैटिंग के लिए खड़े हैं।

आगे की ओर बढ़ते हुए उसी के साइड मे --

और उसमें एक एग्जिट पॉइंट भी दिखाई दे रहा है जो की ग्रीन कलर का बोर्ड टाइप का लगा हुआ है उसी के --

यहाँ पे एक स्टेट बैंक ए.टी.एम. बना हुआ है जो कि ग्रीन कलर से पेंट है उसके ऊपर स्टेट बैंक ए.टी.एम. लिखा हुआ है व्हाइट कलर से।

फोन है जो कि फो- सेल्फी ले रहा है।

ग्रीन और ऑरेंज कलर से पेंट किया हुआ है सामने की ओर एक हंडा रखा हुआ है और एक केटली दिखाई दे रही है।